और नीचे सामने साइड दो पॉट रखे हुए जिसमें ग्रीन छोटे पा--

बलून से पूरा डेकोरेटेड है और सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने--

ये एक गार्डन का पिक है और यहां पे बहोत बड़ा गार्डन --

रात का टाइम है लाइट की रोशनी आ रही है जो--

ये एक रूम है यहां पे बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें रखी हुई है।

ये एक कार का शोरूम टाइप का है जहां पे कार बहोत सारी खड़ी हुई हैं।

एक आदमी बाइक के पर खड़ा हुआ है जिसने ब्लू कलर का हे --

ये एक रूम है जहां पे यहां पे टीचर्स बैठे हुए हैं जो म्यूजिक टीचर हैं।

नीचे येलो कलर की हो रखी है पीछे बैनर्स से पेंटिंग लगी हुई है।

यह शॉप के बाहर की पिक है और यहां पे एक बस खड़ी हुई है।

ये पहार का एरिया है यहां पर बहुत सारे टायर्स रखे हुए हैं जो ब्लैक कलर के हैं और उसके ऊपर सिल्वर --

ये एक बहुत बड़ा हाल है और यहां पे--

ग्रे कलर की है एक बीच में वाइट कलर की है और रेड कलर की है।

ये वीजा मास्टर का एक ऑफिस है यहां पे लकबोर्ड की शेल्फ बनी हुई हैं।

ये एक महल का पीक है यहां पे बहुत बड़ा मेहलसा बना हुआ है।

और ब्लैक कलर का कुछ गेट लगा हुआ है एक आदमी मास्क पहने हुए और ब्लैक टोपी लगाए हुए कुछ अंदर वायरिंग्स कर रहा है मुस--

ये एक घरसा है जहां पे रोम सेल मैश लिखा हुआ है और--

रैक से रखे हुए है एक ऑटो वाला आ रहा है जिसने ब्लू --

ये एक जिम का पिक यहां पे बहोत सारी मशीनें रखी हुई है।

ये ब्लू कलर का पेंट हो रखा है ऊपर हेलोजन लाइट लग रही हे।

और साइड में छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं।

जो बलून से सजा हुआ है बाहर एक आदमी लड़का खड़ा हुआ है जिसने ब्लैक कलर --

ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का एरिया है और सामने बहुत सारे फोल्स लगे हुए हैं आयरन रोड के।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

ब्लू कलर की जींस में रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई और सर के ऊपर कुछ बांध हुआ है।

ये एक फर्टिलाइजर यह एक खेती की जगह है यहां पे बहुत बड़ी-बड़ी फसल हो रखी हैं।

दूर-दूर तक फसलें हो रखी हैं दिन का टाइम है और पीछे साइड बड़े-बड़े पोल लगे हुए हैं खंभे लगे हुए हैं।

और मशीन लगी हुई है सामने मेला लगा हुआ है और साइड में--

और जो ऊपर की तरफ जा रहा है तीन चार लोग आगे निकल गए हैं पीछे--

ये एक साड़ी की शोरूम है और यहां पे मिरर लगे हुए हैं दो बड़े-बड़े एक स्क्वायर में एक ओवल शेप में ऊपर लाइटिंग आ रही है।

ये एक ही शॉप है किराने की यहां पे बहुत सारे--

और बगल में एक घर बना हुआ है उसमें एक फाउंटन --